एक बहुत बड़ा आ आदमी जा रहा है ट्रेक्टर में बैठ के एक ट्रेक्टर चल रहा है वाइट कपड़ा पेहन के बहुत सारे आदमी आना जाना कर रहे है।